नीचे हमे पानी दिखाई दे रहा हैं पानी के किनारे हमे बहुत सारे झाड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमे खुला आसमान दिखाई दे रहा हैंनीला आसमान दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे हमे सफेद सफेद बादल भी दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर हमें कुछ बाइक दिखाई दे रही है यहां हमें सफेद कलर की बाइक दिखाई दे रही है लाल बाइक दिखाई दे रही है उसके ऊपर कुछ सामान दिखाई दे रहा है सड़क प्मे सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रह है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक घाँस से इंडिया का झंडा बना दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमे उसके ऊपर हरी भरी घाँस भी दिख रही उगी उगी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमे--